इसकी सीलिंग का कलर व्हाइट कलर का है साथ ही इसके साइड में एक ब्लैक कलर की चेयर रखी हुई है।

इस फोटो में एक--

बहुत बड़ा स्कूल है साथ ही स्कूल का कलर वाइट कलर का है।

एक बहोत बड़ा एंट्री करने के लिए बहोत बड़ा दरवाजा बना हुआ है।

एक लड़का क्रॉस हो रहा है और एक स्कूटी पे एक लड़की क्रॉस हो रही है।

इस फोटो में एक दुकान है ये दुकान के बाहर एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है जिसमें कनक मंदिर लिखा हुआ है।

इस दुकान के दोनों तरफ दो और दुकान है जिनका शटर अभी डाउन है।

फोटो में एक क्लीनिक है ये क्लिनिक डेंटिस्ट क्लिनिक है साथ ही इस क्लीनिक में एक डॉक्टर है और एक पेशेंट जो लेटा हुआ है उसके बगल में एक नर्स है।

व्हाइट कलर का शर्ट और ब्लू कलर का जींस पहनी है और बैग टांगा हुए है।

फोटो में होटल है इस होटल का नाम सैनी है साथ ही इस होटल के चारो तरफ बहोत सारे घर है।

इस होटल के बाहर बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए है।

पहला किया हुआ दिवाल पे ए_सी लगी हुई है।

इस फोटो में एक बहोत बड़ा वर्कआउट जिम है साथ ही इस जिम में एक छोटा सा केबिन है।

केबिन में एक टेबल और एक ब्लैक कलर की चेयर है उसके साथ ही बगल में येलो कलर का सोफा है।

इस फोटो में एक बुक स्टोर है साथ ही इस बुक स्टोर के अंदर रैक पे बहुत सारे बुक को डेकोरेट करके रखा गया है।

इसके वॉल का कलर ऑरेंज और वाइट कलर की है।

इसके साइड में दो टेबल पे कंप्यूटर्स रखी गई है साथ ही इसकी साइड में बहुत बड़ा मशीन है।

इस फोटो में एक बहोत बड़ा होटल है इस होटल का नाम स्वर्ण रेखा होटल है।